प्लाटिंग कर के और घर का डेवलप कर के--

एक पर्सन सर्विसिंग करने में लगा हुआ है।

सब कुछ यहा पे दिख रहा है प्रिंटर --